यह देखने पर आसपास का कैंपस बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा--

यहां पर फोटो में एक बहोत ही बड़ी फैक्ट्री दिखाई गई है जहां पर बड़ी बड़ी चिमनियां नजर आ रही हैं।

यहां पर एक बहुत ही बड़ा मशीन दिखाई दे रहा है।

क्योंकि यहां होटल में सारा सामान खाने पीने का सब कुछ मिलता है।

यहां पर म मिट्टी के द्वारा बनाए गए कुछ मटके रखे गए हैं जोकि काफी अच्छे और काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं।

नाश्ता कर रहे हैं डिनर कर रहे हैं कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं यह दृश्य काफी अच्छा और काफी अच्छा --

मुझे ऐसे में हर व्यक्ति को मोर देखने में बड़ा मजा--

यह एक कैफे जिसका नाम मिष्ठान कैफे --

दुकान यह दुकान काफी अच्छी और काफी पुरानी है।